बहोत से हिन्दू देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है।

जहाज के ऊपर हरे कलर के बहोत से इक्विपमेंट्स लगे हैं।

दूसरा वॉलपेपर भूरे रंग का है जिसमें पक्षियों के पंख का डिजाइन बना हुआ है।

ये किसी झील का दृश्य प्रतीत हो रहा है जिसके चारों तरफ सिर्फ हरा भरा माहौल है।

यह एक पार्लर भी प्रतीत हो रहा है जिसमें महिलाओं के श्रृंगार के तरह तरह के सामान रखे हैं जैसे कि बिंदी लिपस्टिक आदि।

फिलहाल यह स्कूल खाली है और इसमें कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है।

उपर एक सफेद कलर का पंखा दिखाई पड़ रहा है जो कि गन्दा है।

इसमें पीछे महिलाओं ने व्हाइट कलर का गाउन पहेना है।

सड़क के बगल में थोड़ा सा पानी भी जमा हो रखा है।

यह पांचो बाइक बिकने के लिए दुकान पर लगा रखी हैं।

यह एक जिम का दृश्य है जिसमें पीछे बहोत सारे जिम के इक्विपमेंट्स पड़े हैं।

यह दृश्य रिलायंस के सेल्स रूम का है।

बैठने के लिए दो सोफे जैसी चेयर रखी हैं और उनके बीच में एक टेबल है।

इस अस्पताल के बाहर बहुत सी बाइके के खड़ी हैं और एक तरफ एक कार खड़ी है।

यहां पर एक कैफे का दृश्य दिखाई दे रहा है जो कि बंद पड़ा है।

यहां फार्मेसी की दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगा है उसका नाम है साईं ब्लिस फार्मेसी ।

दो लोग दुकानदार से कुछ वस्तुएं लेते दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा है राजनंदनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ।

उस दुकान के बगल में एक होटल भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में बहोत सी लिचियां दिखाई दे रही हैं।

इसमें बहोत से पेत्ते भी लगे हैं जो की हरे रंग के हैं।

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसमें कई प्रकार के कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं।

इस चित्र में एक बैठक का स्थान है जहां पर टेबल और पीछे बैठने के टेक लगाने के लिए कुशन्स और तकिये रखे हैं।

घर के दरवाजे का रंग भूरा है जो की अभी फिलहाल ताले से बंद है।